कई हाथ में लगाने वाला दिख रहा है।

और कुछ बोर्ड के समान दिख रहे हैं।

तस्वीर में इंजन ऑयल का दुकान दिख रहा है।

रोड के एक दो तरफ एक बस खड़ा है।

ये पेड़ है पेड़ के ऊपर कोई पोस्टर लगाया है।

तस्वीर में एक ट्रक खड़ा दिख रहा है।

आयना के ऊपर कुछ कपड़े बान्हा है।

जो काले कलर का है।

कई छोटे छोटे प्लास्टिक में डिब्बे दिख रहे है।

तस्वीर में एक चाय स्टोर दिख रहा है।

बगल में एक और दुकान है उसके ऊपर प्लेट टेलर्स लिखा हुआ है।

इसमें एक मोमबत्ती रखा है मोमबत्ती सफेद कलर का है।

डेप डेप पोस्ट ऑफिस लिखा है।

रिल पर एक नदी दिख रहा है।

एक आदमी खड़ा है जो धोती पहना है।

तस्वीर में पहाड़ दिख रहा है।

पत्थर के ऊपर कई काई बैठा दिख रहा है।

दो तीन बच्चे दिख रहे है।

कई डिब्बे हैं जिसके अंदर कुछ कपड़ा रखा दिख रहा है।

कलर का हैं आस-पास कई पत्थर दिख रहा हैं मट्टी नीचे दिख रहा है।

नारियल का पेड़ दिख रहा है।

पीले वाले के घर के ऊपर बड़ा सा पोस्टर लगाया है।

खिड़की है जो शीशे का है बीच बीच में दीवार है।

से ऊपर तार आता जाता दिख रहा है।

बहुत सारे डम्बल लाइन में रखे हुए हैं।

तस्वीर में मंदिर दिख रहा है।

तस्वीर में एक शादी का मंडप दिख रहा है।

यहां सामने कुछ ड्राइंग का सामान रखा है।

दुकान के अंदर बैगनी कलर से दीवाल पेंट किया गया है।

दीवाल पीले कलर से पेंट किया गया है।

उधर दो शेफ दिख रहे हैं।

इसमें प्लेट रखी दिख रही है।

एक आदमी ने बैगनी कलर का शर्ट पहना है।

हरे कलर का चटाई बिछा है।

पंखा लगाया है पंखा रुका हुआ है।

ज़मीन में एक शोरूम दिख रहा है।

सारे बैग रखे है कुछ बैग अलमारी में रखे हुए है।

तस्वीर में एक डैम दिख रहा है।

महिला खड़ी दिख रही हैं।

उस बा सटर दिख रहा है।

कई मशीन लगे है जो बुल ब्ल्यू कलर के है।

दुकान पर अलमारी है जिसके अंदर कई किताब रखे है।

तस्वीर में डांस क्लास दिख रहा है।

और फैन चल रहा है।

इन पे कई डिब्बे रखे हैं जिन पे चॉकलेट ओकलेट रखा है।